यह एक मछली मार्केट का फोटो दिख रहा है जिसमें बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

यह एक मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ा स्टील का गेट लगा हुआ है।

बाहर एक लोहे की रेलिंग लगी हुई दिख रही हैं बीच में फर्श किया गया है।

एक बाउंड्री बनी हुई दिख रही है एक पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है।

जिसमें एक खिड़की लगी हुई दिख रही है जिसमें एक जाली लगी हुई है।

एक आदमी भी खड़ा हुआ दिख रहा है दीवाल पर टाइल्स भी लगी हुई दिख रही है।

एक ए_सी भी लगा हुआ दिख रहा है और कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में कुछ औरतें योगा करती हुई दिख रही हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे नमकीन के पैकेट टंगे हुए दिख रहे हैं।